उसके पास हि एक छोटासा गड्डा दिखाई दे रहा है एक घास दिखाई दे रहे है।

दुकान है जिसमे काफी सारी स्वेटर दिखाई दे रहे है। शॉर्ट स्वेटर भी है लॉन्ग स्वेटर भी है और पाँच छह स्वेटर टिंगी टंगी दिखाई दे रही है। सामने कु सूट दिखाई दे रहे है।

कुछ झाड़ीया दिखाई दे रही है कुछ पत्ते दिखाई दे रही है कुछ बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है कुछ खारीया दिखाई दे रही है कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है।

उसमे सीमेंट की रेलिंग लगी हुई है। दो खिड़किया दिखाई दे रही है। उसमे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तीनों शटर मे एक शटर थोड़ी सी बची हुई खुलने के लिए एक शटर पूरी खुली हुई काफी लोग खड़े--

एक पूल है पूल के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी नदी को देखते हुए देख राह रहा--

एक हारमोनियम है पियानो है एक गिटार है और एक बैग रखा हुआ हैं दूसरा बैग भी रखा हुआ हैं।